यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं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
अब अपने document में columns प्रविष्ट करें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
जितने columns आपको चाहिए वह चुनें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
अतः दूसरे प्रारूप पर click करें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
और ok button पर click करें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
सभी संरूपण formatting options जैसे
align left align right
text में background color जोड़ना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
text animation टैब पर click करें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
और अंततः ok button पर click करें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
और अंततः ok button पर click करें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
toolbar में autospellcheck icon पर click करें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
* निम्नलिखित link पर उपलब्ध video को देखें